इस तस्वीर में एक पंडाल है पंडाल में काफी लोग निचे चटाई पे कुछ लोग --

इस फोटो में दो बड़े-बड़े भवन दिखाई दे रहें हैं।

फोटो में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो की अपने ऊपर एक बोरा भरा हुआ ले जा रहा है तथा सामने भी एक व्य --

गली के बगल में एक भवन है जो की दुकानों का है और सामने उसकी गाड़ी और एक व्यक्ति खड़ा है।

जो की धूप से खिला हुआ है पहाड़ के इस साइड भी छोटे-छोटे पहाड़ हैं।

इस इमेज में एक थ्री व्हीलर इ रिक्शा दिखाई दे रहा है।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

उसके पीछे एक चेयर भी रखी हुई है जो की लाल रंग की उसका लकड़ी भूरे रंग की है।

फोटो में एक बहुत बड़ा पहाड़ तथा खुला आसमान नज़र आ रहा है।

एक गेट दिखाई दे रहा है अंदर भी शीशे का गेट है तथा उसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है तथा शीशे पे --